कोई एक डान्सर नजर आ रही है जो स्टेज पे डास कर रही है।

रेड़ कलर की हुई है ऐ दांस्के मुद्रा में ह खड़ी हुई है।

यहाँं पर आप को ईसाई धर्म के लोग नजर आ रहे हैं सामने आपको फादर भासर देते नजर आ रहे हैं जो --

यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक इंजीनियर है जो बता --

एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई हैं ।

ए एक अस्पताल है जिसका नाम सादर अस्पताल गोपाल गंज है। ए बहोत बड़ा अस्पताल है।

ए एक कॉफी स्टोल है जिसका नाम आर.के. कॉफी स्टोर है। और एक --

बरनियों में कुछ बिस्कुट भी रखे हुए हैं यहाँ पर चाय कॉफी मिलती है।

एक सलून है जिसपे कटिंग होती है। यहाँ कोई एक लड़का भी नज़र आ रहा है जो कटिंग करता है और --

छात्रा माइक की सहायता से कुछ बोल भी रहा है यहाँ--

यह आपको बहुत सी साइकिल नजर आयंगी है । बहुत से लोग मछलिओं को ख़रीदे रहे हैं तो कोई खड़ा हुआ है। यह मछली बाजार है यहां पर बहुत अधिक संख्याओं में मछली है ।

यह ईसाई है आपको ईशा मशीहा की फोटो भी नजर आ रही है यहाँ पर फादर भी बैठे हुए है स्टेज पर आपको एक महिला भाषण देती हुई नजर आ रही है।

शादी हॉल है ये एक बहुत बड़ा शादी हॉल है ये एक गेट में गेट है यहाँ पर फूलों की मदद से सजावट की गई है और सुंदर- सुंदर लाइटे लगाई गई है यहाँ पर आप देख रहे है।